यह चित्र में मच्छी बाजार दिखाई दे रहा है जहां पे मच्छी रखी गई है और एक दो लोग मच्छी लेने के लिए खरीदने के लिए आए हुए हैं।

और साय अगल-बगल में और भी दुकाने दिखाई दे रही हैं।

चित्र में एक पुस्तकालय का दृश्य नजर आ रहा है शायद यह बुक स्टोर भी हो सकता है।

घर नजर आ रहा है जिसको देखते हुए एक आदमी सफेद शर्ट और काला पैन्ट पहना है।

यह चित्र में जिम का दृश्य दिखाया गया है एक आदमी जिम में अ जिम में हाथों की एक्सरसाइज करते हुए बहोत ज्यादा बंडल उठाते हुए नजर आ रहा है।

ये चित्र में कोई ए.टी.एम. दिखाई दे रहा है जिसके सामने दो लड़के खड़े हुए हैं।

यह चित्र में छठ पु पूजा का दृश्य दिखया गया है।

जो की काफी बड़ी दिखाई दे रही हैं और इनको बेचने वाले अपने मुंह पर मास्क लगाए दिखाई दे रहें हैं।